जो है नीचे को आ रहा है जो बहोत ही सुंदर लग रहा है।

शायद ये कोई स्पेयर पार्ट की दुकान है यहां पे कुछ कबाड़ भी पड़ा है या फिर ये--

ये यहां पर आइसक्रीम दिखाई दे रही है जहां पर तीन कलर की आइसक्रीम है पिंक यलो व्हाइट जो प्लेट में रखी हैं और यहां पर स्पून पड़े हैं।

सिंगार करके और पूजा कर रही है यहां पर दीवारों पर गुब्बारे भी लगे हुए हैं आसपास खेलते हुए बच्चे दिख रहे हैं।

और फिटिंग में पीछे फिटिंग में सामान पड़ा हुआ है।

ये किसी हॉस्पिटल का दृश्य दिख रहा हैं जो फीमेल --

शायद ये लेडीज के लिए ही बनाया गया है ये किसी हॉस्पिटल का दृश्य जो हैं नजर आ रहा है फीमेल --

ये नाव भी नजर आ रही है और बहोत सारे घर भी नजर आ रहे हैं और बहोत ही सुंदर जो है--

आसमान बिल्कुल क्लियर जो है नजर आ रहा।